यह एक घर है जिसमें एक इंसान खड़ा हुआ है उसके बगल में तीन कुर्सी भी है और टेबल में वह--

यह एक शोरूम दिखाई दे रहा है जो बहोत से स्कूटी खड़ी हुई है और बहोत अच्छे से गुब्बारे से अच्छे से दिखाई दे रहे है और डेकोरेट किया गया है जिनमें से एक व्यक्ति--

और एक बस जाती हुई प्रतीत हो रही है और सड़क भी अच्छा दिखाई दे रहा है चारों तरफ पेड़ -पौधे--

यह एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और अच्छे से दिखाई दे रही है उसके नीचे में कुछ छोटे-छोटे मूर्तियाँ भी दिखाई--